और द बाबा इंग्लिश क्लासेज यहां एक कोचिंग है।

यह नजारा बहुत सुन्दर लग रहा है और --

और उसके पीछे एक ग्लोब भी बना हुआ है।

जो घर वा वाकई में बहुत सुन्दर है।

जिनमें से एक व्हाइट कलर की दूसरा ब्लू तीसरा ब्लैक और दो अलग-अलग व्हाइट कलर की पांच कारे है इस रोड पर।

इस पिक्चर में हम एक को देख सकते है जो की रेड कलर की है।

ये इसमें यह एक भीम यू.पी.आई. का क्यू.आर. कोड है।

जहाँ पर हर प्रकार के केक मिलते हैं बकरीज मिलती हैं।

और एक लड़का यहाँ गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिये आया है।

हमे इस पिक्चर में एक बहुत ही सुन्दर गार्डन दिखाई दे रहा हैं।

और बोर्ड पर लिखा है हीरो तरंग ऑटो मोबाइल्स ।